अ इस फोटो में कंस्ट्रक्शन चल रहा है नीचे छत डल रही है पिलर दिखाई दे रहे हैं वो क्या है कि पीछे मिट्टी भी नजर आ रही है पीछे बहोत सारे घर भी दिखाई दे रहे हैं।